बच्चा सब तो बहुत मेहनती होवेला | पढ़ता अपना एगो रूम बा बोर्ड बा | का कोरिअको बोर्ड बा उजरको बा |

उजला कलर के बहुत ज्यादा रंगीन बा ई सीन |

और एगो पुल बा लगता कही रुकलेबाला सा जरुर जाम हो--

इ एगो हॉस्पिटल के फोटो बा।